सामने दो मंजिल की इमारत है जो की क्रीम कलर की इमारत है चारों तरफ से पेड़ पौधे खड़े हुए है बगल से कुछ बसेस रखी हुई है जोकि येलो कलर की बसे है जोकि पांच बस रखी हुई है पीछे कुछ नीचे कुछ कंकड़ डले हुए है।

सी सड़क है चारो तरफ से पड़े हुए है पीछे से चारो तरफ से हरियाली हो रखी है और वो जो की बडे से पेड़ है उसके चारो तरफ कथ्थई और सफेद कलर के हुए है छोटे छोटे।

इसमें एक मोर है नीचे एक पक्की सड़क है जिसमें हल्का सा दूब और काई लगी हुई है सकल बगल से कुछ पेड़ पौधे लगे हुए है।

और चारों तरफ पिलर खड़े हुए हैं और कुछ पत्थर की एक अ इमारत है जिसमें कुछ पिलर है पत्थरों के नीचे पत्थर डले हुए हैं ऊपर पंखा लगा हुआ है लाइट की फिटिंग हो रखी है पीछे एक सामने से मंदिर है।

यह चार पिल्लरों पे एक छत टिकी हुई है जिसमें कुछ लाइटिंग लगी हुई है यह पेट्रोल पंप है जिस पर इंडियन ऑयल लिखा हुआ है।

सामने एक क्रीम कलर की इमारत है उसके आगे एक गेट है जिस पर सरस्वती माता की मूर्ति बनी हुई है उसके बाहर एक डेकोरेशन हो रखी है बाहर एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई है सामने से कुछ पेड़ लगा हुआ है जिसमें पत्तियां निकली हुई है सामने क्रीम कलर --